इसके लेफ्ट साइड से बलूंस लगे हुए हैं।

ये एक जगह है और यहां पर अ सीढ़ी जा रही है। उसका रेड कारपेट है।

वाटरफॉल है और यहां पे और एक पहाड़ भी हैं जिस पे ग्रीन ग्रीन घास उगी हुई हैं।

इस साइड से साइकल्स है और उनके साथ कुछ आदमी लोग खड़े हुए हैं और आधे बैठे हुए हैं।

ये सड़क है और यहां पे पेट्रोल पंप बना हुआ है।

और यहां पे एक पाइप नजर आ रही है एक झाड़ू नजर आ रहा है।

ये एक बिल्डिंग है और यहां पे इसका कुछ काम चल रहा है ऊपर बंदा खड़ा है।

उसने कुछ लकड़ीयो का कूब यहां से बनाया हुआ है।

और व्हाइट कॉलर नीचे से है और फ्लोर गोल्डन कलर है।

ये एक कश्ती है और ये समंदर में है और इस कश्ती में अ अ सात लोग बैठे हुए हैं।

और वहां से कुछ पहाड़ भी अ नजर आ रहे हैं दूर।

ये यहाँ पे वाशिंग मशीन्स है और ये अ यहां पे कुछ अलमीराज हैं।

और पीछे से कुछ थोड़ी लाइट रिफ्लेक्टर हो रही है।

ये एक दरिया है और इसके ऊपर से एक पूल जा रहा है।

और यहां से बहुत सारा कूड़ा कर करकट भी नजर आ रहा है।

ये एक पुल है और ये ऊपर से दिखाया गया है और यहां पे सड़क नजर आ रही है और--

और यहां ऊपर कुरान ए पाक रखा हुआ है।

ये अ एक स्विमिंग पूल है और यहां पर लोग स्विम कर रहे हैं यहां पर यह बच्चों के लिए बड़ों के लिए एंटरटेनमेंट है।

और ये इसमें लकड़ी के सपोर्टस नीचे लगे हुए हैं।

ये एक किला है और इसको अ ये बहोत पुराना किला है। ऊपर घास अ चढ़ी है।

एक वायर यहां से आ रही है और एक दरवाजा है।

और यहां पर इन्होंने या डिफरेंट कलर्स के कपड़े पहने हुए हैं और टीचर खड़ी है।

बहोत सारे डिब्बे हैं शेल्फों पे और यहां पे अ अंडरवियर्स का समान है।

अह हरियाली है घास है और ये जिसमें चारा खा रही है वो अह स्टील का बना हुआ है।

और वो यहां पे ब्लैक और रेड कलर की चेयर्स भी है।

और यहां पे वाइट और अअ रेड कलर की चीयर्स है वाइट कलर की चेयर्स पे कुछ लोग बैठे हुए हैं।

ये एक बाइक है और ये ब्लैक कलर की बाइक है ये एक रास्ते पे खड़ी है जिसको दो तरफ से पानी है।

बिल्डिंग का रंग थोड़ा ऑरेंज कलर का है।

ये एक शॉप है और यहां पे ये शॉप पे फैंस बेच रहे हैं।

और यहां पे गीजर्स लगाए हुए है बेचने के लिए।

और ये मंदिर के बाहर का आंगन है और यहां पे पेड़ नजर आ रहे हैं। एक झंडा नजर आ रहा है।

और यहां पे पाइप्स लगाई हुई है पानी देने के लिए।